हर अपार्टमेंट में एक पार्किंग स्थल एक पार्किंग जिसमें अभी जहां के अधिक किसी प्रकार के आदमी का नहीं है।